किसी हर प्रकार की किराने वगेरा की घर की घरेलू और आयुर्वेदिक हर सामान उपलब्ध है इस दुकान पे।

और अंदर काफी लाइट वाइट की व्यवस्था बड़ी व्यव व्यवस्था है।

ये क्रिश्चियन का पीछे बोर्ड दिख रहा है। बगल में सर जी लोग खड़े हुए है और काफी अच्छी सी व्यवस्था यहाँ लग रही है।

पीछे काफी बड़ा-सा बंगला है। दो दो नारियाल के पेड़ हैं।